यहाँ पर हमे टाइल्स का फ्लोर दिख रहा है यहाँ पर एक ब्राउन कलर की लाइन भी बनी हुई है यहाँ पर कुछ क्राफ्टिंग वर्क भी रखा हुआ है।

यहा पर कुछ फ्लोर काँच के भी है यहा पर काफी सारे वेजीटेबल और फ्रूइट्स रखे हुए है ऊपर कुछ पत्तिया भी लगी हुई है यहा पर साइड मे कुछ रेक भी बनी हुई है।